ये चित्र मा हम तें एक बड़ी जगह च दिखेण लगी जफणा भैर फणा हमते कुछ लोग छन दिखेण लग्यां बैरवानी दिखेण लगीं जूं का हाथम थैलान य मुंडस्यारू का हाथ मा हलमेट दिखेण लग्युं।

जफणा हम तें बड़ा-बड़ा ढुंगा दिखेण लग्यां ओर - पोर हमते कुछ घास दिखेण लगीं बड़ा-बड़ा डाला दिखेण लग्यां जुं बिटि हमते बड़ी-बड़ी बेल भी लटकदि दिखेण छा लगीं।